और इसमें बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं वे कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वे लोग अपने-अपने सारे --

और ये अ बहुत बहुत बस है और यहाँ टैम्पू भी लगी हुई है और बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं।

और एक टीचर जो सिखा रहे है डांस और सारे बहुत सारे बच्चे डांस सिख रहे हैं और इसके चारों ओर --